यह किसी जगह का सीन है जहा पर खुला आसमान है पेड़ है दो बिल्डिंगे है पीले कलर की और --

ये एक पार्क की फ़ोटो हैं जहां पर बोहट सारे झूले लगे हैं झूलने के लिए बच्चों के लिए झूले हैं बच्चे आते हैं खेलते हैं झूलते हैं और उसके आस पास पेड़-पौधे हैं खुला आसमान है और ये दिन का सीन है।

यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड भी दिख रहा है और ये रात का सीन है।

यह एक ग्राउन्ड है जिसके सामने एक गाड़ी खड़ी है और एक पीला मकान है।

यह रात का टाइम है। ऊपर खुला आसमान है। यह फोटो ऊपर से ली गई है और उसके नीचे कोई दुकान है। जहाँ पर दो लोग खड़े हैं।

यह फोटो किसी पेट्रोल पम्प की है जहाँ पर बसे खड़ी है जिसका नाम है अच_पी गैस वहां पर लोग खड़े है लोग पेट्रोल ले रहे हैं ।

यह एक मंदिर की फोटो है वहाँ पर एक बड़ा सा नाग जिसके सात मुँह है वो हैं |

यह एक खुला मैदान है जो कि बोहत बड़ा है और यह एक दिन का सीन है जहाँ पर मिट्टी रखी है।

ये फोटो एक पार्क की है जहाँं पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ दुरी पे एक बड़ा सा --

लोग सामने खड़े हैं और यह फ़ोटो रात में ली गई है और इसके आस-पास पेड़-पौधे हैं।

एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जहां प एक नीली -- नीली कलर की ट्रैन खड़ी है और कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग ट्रेन के गेट से बाहर देख रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है और ये दिन का सीन है।

यह फ़ोटो दिन में ली गयी है आसमान के नीचे।

यह एक होटल की फोटो है और उसके साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग आस पास में ही हैं और ये दोनों शायद से कोई होटल हो सकता है और ये दिन का सीन है और ये खुला आसमान के नीचे --

आके जाके बहोत पहाड़ है और खुला आसमान है और बड़ी अच्छी नदी है ये।